यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर डायपर भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।